बगल मे एक घर का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है।

और पेड़ वेड़ कोकोनट का पेड़ सब भी नजर आ रहा है।

बिल्डिंग दिख रही है जो की एक चर्च है। इसका इसका आकार से पता लग सकता है कि यह एक चर्च है। जो की क्रिश्चियन लोग का --

इस तस्वीर में मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान दिखाई दे रहे हैं।

ये दुकान में बहुत सारा फोन इयरफोन ये सब रखा गया है।

और ये साइड में मिक्स ये सब कुछ डोरबी मीका और ऊपर फ्लोर में ऐसा लिखा गया है और बहुत सारा गाड़ी --

जो कि एक पार्क लग रहा है जिसका सामान सब देखते--

का वो सब भी दिखाई दे रहा हैं टोपी वोपी नजर आ रा हैं इसमें कैलेंडर --

और ये बहोत अच्छी तरह से सजाया गया है खूबसूरत--

बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर वर का इसमें छ बंदे नजर आ रहे है।

बम्बू सब भी रखे हैं गिट्टी विट्टी भी दिख नजर आ रही है मुझे। बालू वालु ड्राम ब्राम पानी वानी रखने के लिए।

दुकान का सामान जैसे चिप्स विप्स या कुरकुरे ये सब बेचने के अलावा भी मिट भी बेचा जा रहा है।

इसमें एक जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में एक परिवार बैठा हुआ है अपनी मम्मी पा बच्चे वच्चों लोग का साथ।

जैसे कि आप नोटिस बोर्ड में देख सकते हैं वी_आई_ए लिख के भी नजर आ रही है मुझे।

इसमें अभी भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है फिलहाल।

इसका मालिक हो सकता है फिर छात तो टिना का है।

इससे आप काफी देख सकते हैं बहुत सारे लगाया गया है लाइट वाइट सब भी लगाया गया है।

नीचे से मिट्टी लाते हुए भी नजर आ रहा है छत ढलाई के लिए।

एक लगाके है बहुत ज्यादा जंगल के बीच मे हैं दो ठो बंदी उधर बैठ के है।

इस इसमें दरवाजा बंद है और जिसकी आप देख सकते हैं रॉय अकैडमी लिखा गया है।

और आसपास सब कंपाउंड का अंदर में दिखाई देते हुए और इधर में श्री में जाते हुए दिख रहे हैं।

यह लगाया गया है ऊपर जाने के लिए अभी एक थो इनकंप्लीट है इसको बना रहा है अभी।

यह नजारा मुझे किसी रेस्टोरेंट का लग रहा है जो अन्दर हिस्सा का दिखा रहा है जिसमें बहुत सारे कुर्सियां लगे लगाया गया है कस्टमर लोग के लिए।

अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है साफ सफाई रखा गया है इसको--

तस्वीर में मुझे एक घर का अंदर का नजर नजर आ रहा है जो की बहुत साफ सुथरा से रखा गया है।

पानी में तैरने जा सकते हैं मछली पकड़ने के लिए फिर इसमें आखिरी हिस्सा--

सुखा नजर आ रहा है पीछे में थोड़ा हरियाली फैली हुई--

इस अब इसका बेंच और चेयर सब और टिशू पेपर सब देखके और मिनी रोज भी रखा गया है इससे हम बोल सकते हैं कि अंदर का नजारा है इसको काफी अच्छे से साफ सुथरा रखा गया है।

उपर ग्रीन कलर मारा गया है और आधा तक टाइल्स लगाया गया है फ्लोर भी टाइल्स से लगाया गया है और इसमें पंखा भी नजर आ रहे।